इस फोटो विच एक मेला नजर आ रहा हैं जिसमें कुछ औरते--

इस फोटो बीच एक योगा करते बच्चे नजर आ रहे हैं जो सभी बच्चे अपनी अपनी मैट बिछा के एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और पास में एक काफी बड़ी तोड़ी का ढेर लगा हैं।

और उस नदी में कुछ लड़के नहा रहे हैं और कुछ लोग पूल के पास खड़े हैं।

तिल के गेट डिजाइन डिजाइनिंग लगे हुए हैं और काफी बड़ा और कमोड भी लगा है।

इस फोटो विच एक मेडिकल स्टोर है जिसपे रिसेप्शन टेबल बना है उसपे काफी काफी बड़े बड़े पोस्टर लगे है।

जैसे पर्पल पीला लाल नीला सफेद काला ये सभी रंगों के कोट लगे हुए है।

बाहर काफी बड़ा बोर्ड भी लगा है।

इस फोटो बीच एक काफी बड़ा समंदर है समंदर के किनारे काफी घास झाड़ियाँ--

लगी हुई हैं और दो औरतें चल रही हैं छत पे।

और साइडों से उस जगह को घेरा गया है।

बीच मे एक छोटा सा डस्टबिन भी पड़ा है।

इस फोटो वीच एक फोर्ड नाम का दफ्तर है।

इसके बाहर काफी गाड़ियां पार्क की गई हैं।

और कारीगर आसपास खड़े हैं कुछ साइड में बैठे हैं।

करना पाराय पास में कुछ लड़के बातें कर रहे हैं और डिस्को लाइट भी लगी हुई है।

आव नीचे एक बड़ी गाड़ी खड़ी हैं दुकान के बाहर दो लड़के बाते कर रहें है।

इस फोटो विच काफी लकड़ियां लगी हुई है कुछ लटकाई है और कुछ--

और पास में कॉपी पेन और कैलकुलेटर है।

और शीशे के पास काफी लड़कियों के गाऊन --